इनके टायर्स की शॉप है इनके आस पास टायर रखे हैं दुकान है पीछे।

आसपास भी छोटी छोटी मूर्तियां बना रखी हैं।

ये बुक शॉप है और इसमें एक आंटी दिख रही है।

पीछे देखो बैलून से इन्होंने बहुत अच्छा सजा रखा है सारा--

और बाहर दो झंडे लगे हुए हैं।

ये एक दुकान है जिस पे पैकेट लटके हुए इतने सारे ठंडे की बोतल टेबल पे रखी हुई हैं सारी कांच की भी हैं।

यह सारे टायर रखे हैं पीछे रखी हैं एक टेबल जिस पर हुका रखा हुआ है छोटा सा हुका होता है हुकी होती है और चेयर्स रखी हुई हैं व्हाइट रंग की।

आगे ये छोटा ट्रक होता है सर्विस सेंटर होता है जैसे चौबीस घंटे का सेवाएं ऑन होती है।

और इन्होंने रस्सी पकड़ रखी है और एक चेयर रखी हुई है एक ट्रे नीचे पड़ी है सारी।

ये है मच्छी शॉप यहां पे मछली वगैरा काट कर मिलती रहती--

इसका गेट खुला हुआ है अंदर बाल्टी रखी है बाहर चेयर रखी हुई है जिस पे वाइट कलर का कपड़ा है और--

क्योंकि डी_जे का सिस्टम लगवा रखा है और स्टेज करवा रखा है कुछ लेडिज --

और एक आदमी का हाथ दिख रहा है।